इस दृश्य में एक मोमबत्ती है अगरबत्ती है लैंप है।

भी कर रहा है गेट काला कलर का है ऊपर दीवार है दीवार के ऊपर विश्कुमान भवन--

इस दृश्य में कई सारे इक्विपमेंट्स हैं डंबल्स है साइकिल्स है एंड लाइट है।

बहुत सारे पंखे भी दिख रहे हैं कुर्सियां--

और सामने बैठने की व्यवस्था की गई है।

इस दृश्य में कई सारे--

लाइट जगमगा रही है।

उसके स्टाफ का ड्रेस ब्लू कलर की दिख रही है।

गाड़ियां कतार में लगी हुई दिख रही हैं।

इस दृश्य में कई सारे लाइट दिख रहे हैं।

मॉल के सीढ़ी पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

लेट गो लिखा हुआ है।

सिल्वर कलर की दिवाली दिख रही है।